यहां बाल दाढ़ी सब कटेला मेकअप उकप सब होला शादी के लयकन सब एजे दाढ़ी उड़ी बनावे हकून ।

खेतवा में के खे खेत के आगे हाई ये सब कुछ गाछ उच्छ लगालवा सब लगालवा उ पूरा एकदम पहाड़ी वो पहाड़ी पूरा जंगल भरलवा--

बड़का गो घर बा घर में बड़का गो मंदिर हेय उ देख के साला दिल गद गद हो गया ।